पुलिस के द्वारा शक्ति के लिये उनकी शक्ति के लिये और --

का बनाया गया है और साथ में जेल भी गया है। जो रेलवे या रेलवे में चोरी वोरी करते पकड़ा जाते हैं उनको यहीं जेल में डाल --